यख मा जी ईं इमारतम कुछ मूर्ति कर छन बणीं यख मा जी कुछ ईन्ट कर छन दिखेण लगीं यखम कुछ ढुन्गा छन दिखेण लग्यां।

यक मजी निगासु छ यू मजी डालयू यक मजी एक छप्पर कर छा यू कु तबेलु कर छा यक फण खिड़की कर छा दिखेणी रोशनदान छ दिखेण लगीं।